बहुत सारी लड़की फोटोस ले रही है एक लड़की ने अपना बैग उठाया एक लड़की शॉर्ट्स में खड़ी है।

कपड़ो को टांगा गया है जिसमें सिर्फ लड़कियो और आंटियो के--

तो इस फोटो में मेरे को फूट ट्रैक कलर की किसी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और इसके कलर्स बहुत सैचुरेटेड हमें दिखाई दे रहे हैं सामने बहुत सारे लोग भी हमें दिख रहे हैं।

एक टेबल है जिसपे दवाइयां लगी हुई है सामने की तरफ एक लैपटॉप है और साइड में उसके प्रिंटर भी दिखाई दे रहा है।

साइड में एक टावर भी है लगा हुआ और पीछे की तरफ कुछ बिल्डिंग्स भी दिखाई दे रही है आसमान बहोत साफ है और ये एक सनसेट का मौसम है।

ऊपर आपको क्रिश्चियन का लोगो भी दिखाई दे रहा होगा जो की लाइट से बनाया हुआ है और ये अलग-अलग कलर से बनाया और इसमें अच्छी कलर की लाइट लगी हुई है।

तो इस फोटो में हम एक जिम को देख रहे हैं जहां पे एक लड़का अपनी बॉडी को देख रहा है और कुछ लोग अपने भार उठा रहे हैं तो कुछ लोग अपना वर्कआउट कर रहे हैं।

बादल भी दिखाई दे रहे है और साफ आसमान भी हमें दिखाएं दिखाई दे रहा है जो बहुत बड़ा जंगल भी हमें दिखाई दे रहा है।

ये सभी लड़के एक लड़के कई लड़के--

अ लैफ पर कागज को रख कर हमारा बिल बना रहा है सामने की तरफ हमे कैरम बोर्ड पैक --

खाने पीने की चीजें हमें दिखाई दे रही है कुछ शैम्पू दिखाई दे रहा हमें साइड की तरफ--

आगे एक टेबल लगा हुआ है जिसमें बहोत महंगा सामान दिख रहा है दरवाजे खुले हुए हैं सभी तरीके से और--

और चारों तरफ से ये पेड़ों से ढका हुआ है। सामने हमे सन और उसका वो सेट होते हुए दिखाई दे रहा है।

पीछे की तरफ आपको हेल्थ की चीजे दिखाई दे रही होगी उसके पीछे आपको लाइट्स के बल्ब दिखाई दे रहे होंगे--

किसी सीनरी दिख रही है और सामने की तरफ हमें कलर दिखाई दे रहे है पर पीछे की कलर को हटा दिया गया है।